ये एक रूम है और इसका कलर जो है सफेद कलर है। ऊपर जो पी_ओ_पी की गई है वो भी सफेद कलर में की हु गई है।

ये एक लैब है यहाँ पर काफी ज्यादा कंप्यूटर्स पड़े हुए हैं मशीन्स पड़ी हुई हैं ई_सी_जी मशीन्स वेगेरा वाइट कलर --

ब्लू कलर की एक चेयर है टेबल पर लैपटॉप पड़ा हुआ है।

और एक सामने की तरफ काफी ज्यादा जो है सर्टिफिकेट्स लगे हुए हैं।

टेबल के ऊपर एक कैलेंडर पड़ा हुआ है।

और काफी ज्यादा कोल्ड ड्रिंक्स पड़ी हुई हैं बॉक्सेस पड़े हुए--

एक बिल्डिंग है और उसका जो कलर है वो बिल्कुल लाइट सा पीच कलर है एक मेन गेट है इसका राउंड शेप में--

जो सीढ़ियां बनी हुई हैं राइट साइड पर कमरों में जा रही--

और पीछे काफी ज्यादा लोग पब्लिक खड़ी हुई हैं।

और वो एक दूस वो दुस्से को कुछ समझा रहा है यहाँ पे।

काफी ज्यादा रात का समय है इस वकत--

प्रिंटर पड़ा हुआ है और दूसरे केबिन में एक चेयर खाली पड़ी हुई है।

ग्लासेस भी पेहनी हुईं हैं पीछे जो डेकोरेशन हैं।